इसमें ई-रिक्शा खड़ी हुई है।

दोनों में शटर लगी हुई है शटर खुली हुई है ऊपर से बहोत सारी केबल भी गयी हुई है।